ग्राउड है ग्राउड दिख रहा है। ग्राउड में नेट लगा है खिलाड़ी खेल रहे है वहती बहत वॉलीबॉल का मैच चल रहा है दो टीम है।

मैदान में घास लगी हुई है जो पीली सब भारी दिख रही है। आसमान साफ दिख रहा है। पंडाल नीला--

बोरी है शायद पीले कलर का। आसमान का हिसाब दिख रहा है। रोड काफी साफ़ दिख रही है पहाड़ दिख रहा है।

यह एक शॉप है बिक्री है मिठाइयां रखे हुए बिक्री में दे और पेप्सी वगैरह रखी हे फ्रिज लगी हुई है बिल्डिंग की छत पर लो--

आप एक ओपन पहनी हुई है। एक कुर्सी लगी रखी हुई है। पिलर लगे हुए हैं। एक दीवार बन चुकी है।

ई फोटो मार्केट की है एक बिल्डिंग दिख रही है चर्च है उसके कलर पीला है चर्च के उः के घर पे एक क्रोस बना हुआ है।